यह रेस्टोरेंट काफी बड़ी रेस्टोरेंट है।

तीन दो शेरवानी दिखाई दे रही है।

यहाँ बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है ।

चारो तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

बहोत से बड़े-बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं।

यह चिल्ड्रन पार्क लग रहा है। यहाँ पीछे बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस पूल के स तरफ रॉड लगा अ हुआ है। एक पिलर जैसा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है। जो कि सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है।